जमीन पर कुछ मिट्टी डली हुई है।

इसमें एक दुकान का बोर्ड दिख रहा है।

कुछ लकड़ियों के डिब्बे भी दिख रहे हैं।

बोर्ड के ऊपर टीकरी सीकल लिखा हुआ है।

उसके पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं।

टेबल पर तीन सिलेंडर रखे हुए हैं।

जिसने ग्रीन कलर की जैकेट पैहनी हुई है।

जो किसी मशीन के ऊपर खड़ा है अ उस मशीन का रंग पीला है।